यह एक सीन करने की जगह है।

यह इस स्टेशन है इस स्टेशन में--

यहां पे भोज हो रहे हैं।

शायद क कपड़ा ले रही हैं और--

यहां रोड दिख रहा है और थोड़ा सा बाइक नजर आ रहे है और--

का बोर्ड नजर आ रहे हैं और एक--